देख पा रहे है एक रात का द्रस्य है बोहोत सारे लोग बहार वेट कर रहे है वेटिंग के साथ और यहाँ पे एक स्टेडियम नजर आरहा है जोकि येलो कलर का है और यह स्टाटिदुम के बहार का उससे--

देख पा रहे हैं यहाँ पे रास्ता है | रस्ते के साइड मैं घर नजर आ रही है सामने एक ठेला लगा हुआ है। ओर --

पारे यहा पे एक आदमी बोहोत सारा अ खाने का सामान लेके बैठा हुआ है खाने का सामान फ्रूट है और उसको बोहोत ही सुन्दर से लगाया गया है सामने थोड़ासा बाइक रखी हुई है।